यहां रैली है नेताओं का मंच है।

ये छठ पर्व बहुत अच्छा पर्व है बिहार से चालू हुआ था बिहार से स्टार्टिंग हुआ था छठ पर्व है।

और बहुत सुंदर लगता है तालाब में नहाने में स्नान करने में और अच्छा लगता है खास करके गर्मियों में और बहुत बेटर लगता है।

रात में खास करके और सुंदरता लगता है दिखने में और बहुत अच्छा लगता है काफ़ी भीड़ भी होती है लोग दूर-दूर से आकर देखते भी हैं इस पुहारे के आनंद भी उठाते हैं बहुत अच्छी चीज़ है देखने में सुंदर और --

देखने में सुंदर भी लगता है काफी लोग दूर-दूर से आकर देखते हैं किनारे प खड़े होते हैं इसका इसका एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है खास करके शाम का टाइम और अच्छा लगता है समुंद्र किनारे।

पानी की लहर देखते हैं। लहरों से बहुत अच्छा लगता देखने में लहर आती है उफान मारती है और फिर जाती है।

इंडियन बैंक है यह प्राइवेट बैंक है बहुत अच्छा बैंक है।

काफी भीड़ होती है काफी लोग आना जाना करते हैं सारी चीज यहां उपस्थित हैं सारा चीज मिलता है।

बहुत दूर-दूर से लोग भी आते जाते हैं काफ़ी भीड़ होती है इसमें बुक स्टोर पे सभी लोग खरीदते हैं।

ये गौशाला है। यहाँ विभिन्न प्रकार के गाय रहती रहती हैं।

और काफी जगह भी है। ब्रिज विज भी है। पेड़ पौधे भी हैं और पार्किंग के लिए जगह भी है गाड़ी वाड़ी खड़ा करने के लिए भी --

यह पंडित जी बैठे हुए हैं सभी लोग बैठे हुए हैं स किसी शुभ अवसर पे कोई कार्यक्रम हो रहा है।